पार्क के अंदर एक छतरियां हैं साथ मे ईंट बिछ रही हैं बहुत सारी।

और डिजाइन वाले पड़दे हैं झालर लटक रही है लाल आसमा--

जेक दुकान है रोड के ऊपर एक दुकान का शटर बंद है डिलाइट क्लॉथ हाउस के आगे--

यो एक हॉल है जिसमें बहोत सारी लाइटें फ़रस शाइनिंग है और लाइट एक बोर्ड लग रहे लीले रंग का खिड़की दरवाजे हैं।

और पत्थर की कुर्सी हैं टाइल वगैरह हैं लाइट वगैरह हैं खंभे हैं।